यहाँ पर किसी जगह के अंदर का दृश्य दिखाई दे रहा है जहां पर बीच मे एक छोटा सा चबूतरा बना है जोकी लंबा दिख रहा है चबूतरे के बीच मे घास लगी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक बस स्टैंड दिखाई दे रहा हैं। जो की काफी बड़े एरिया में बनाया गया हैं। बस स्टेंड का वेटिंग हॉल दिखाई दे रहा हैं। जिसके ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ हैं। जिस पर बस स्टेंड का नाम लिखा हुआ हैं।

स्टेज के सामने काफी ज्यादा भीड़ नजर आ रही हैं। यहाँ पर कुछ कार्यग्रम होता दिख रहा हैं। एक आदमी डांस करता हुआ दिखाई दे रहा हैं।

यहाँ पर एक दीवार दिखाई दे रही हैं। जहाँ पर उबरी हुई आकृतिया नजर आ रही हैं। यह दीवार पीले रंग की हैं। और दीवार एक बाउंड्री के पी आगे बनी हुई दिखाई दे रही हैं।

जिसके उपर एक स्पीकर भी लगा हुआ दिखाई दे रहा हैं। इसके सामने एक छोटा सा मैदान भी दिख रहा हैं।

यहाँ पर एक मैन रोड दिखाई दे रही हैं। जहाँ पर काफ़ी ज्यादा ट्रैफिक नजर आ रहा हैं। मैन रोड के बगल में कुछ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। जिस के पीछे बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर एक बड़ा सा ग्राउंड दिखाई दे रहा हैं जिस पर हरी घास लगी हुई है। एक-क नर-न-नेट भी लगी हुई दिखाई दे रही है पीछे व्हाइट बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो कि स्कूल या कॉलेज लग रही है।

निचे चारो तरफ गोलाकार आकृति बनायीं गयी हैं।